यहां एक सड़क बना हुआ है।

यहां एक पंखा लगा हुआ है।

यहां पर एक लाइट लैंप लगा हुआ है।

यहां एक आदमी खड़े हैं आदमी के माथे में लाल टोपी पहने हुए हैं।

यह एक क्लास रूम का चित्र है। यहां पर बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे पंखे और ए_सी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी बैग रखे हुए हैं।

यहां बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक के बोतले रखी हुई है।

यहां पर बहोत सारे खजूर के पेड़ लगे हुए--

यहां पर बहोत सारी बिजली की तारे लगी हुई है।

यह एक दुकान का चित्र है।

यहां एक टेबल लगा हुआ है यहां पर एक बोरा रखा हुआ है।

यह एक घर का चित्र है।

घर के चारों साइड बाउंड्री में लोहे का रेलिंग दिया हुआ है।

यहां एक टिशू पेपर रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे ऊन के बने र सामान रखे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

मंदिर का कलर सफेद है।

यहा बहुत सारे लाइटें जाली हुई है।

यहां पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारा बालू रखा हुआ है।

यह एक दुकान का चित्र है।

यह एक शादी मंडप का चित्र है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें जली हुई है।

यहां पर एक शीशा लगा हुआ है।

यहां दिवाल में बहुत सारे मछली के चित्र बने हुए हैं।

यहाँ पर बोहत सारे पेड़ लगे हुए है।

यहां पर बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

यह एक बहोत ऊंची बिल्डिंग का चित्र है।

एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग का चित्र है।

यह एक मंदिर का चित्र है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें जली हुई है।

यहां एक टेंपू लगा हुआ है। यहां पर एक ठेला लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें जली हुई है।

यहां पर कुर्सियां रखी हुई हैं।

यहां पर एक साइकिल खड़े हैं।

यहीं बहुत सारे पोस्टर लगे हुवे है।